अंकल है जो जा रहे हैं इधर में एक टेबल है जिस पे बोतल टिफिन रखा हुआ है।

उधर में बहुत बड़ा बड़ा पेड़ है जिसमें बहुत हरा कलर में एक टावर लगा हुआ--

कलर के कुछ ऑरेंज कलर के उधर में बहुत सारे पोस्टर वगैरह लगे हुए हैं उधर में एक घड़ी लगा हुआ है एक रूम टाइप का बना हुआ है।

ये एक स्टेशन है स्टेशन में एक लाइट जल रहा है दो तीन खंबे लगे हुए हैं उधर में एक तार लगा हुआ है एक रेल खड़ी है।

इधर में एक बहुत बड़ा सा जंगल टाइप का एक दो टावर लगा हुआ है उसके बगल में एक और ताड़ यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो खड़े हैं यहाँ का जो है बिल्कुल वाइट दिख रहा है।

यहाँ पे एक दो आने जाने वाले रास्ते बने हुए हैं इधर में एक दो अंकल इधर में एक पोस्टर लगा हुआ इधर में टिकट काटने का काउंटर है।

इधर एक गेट है जो गोल्डन कलर का इधर बीच-बीच में एक बास लगा हुआ है

यहाँ एक कमरा है कमरे में पर्दे लगे हुए हैं एक टंगना जिसपे कुछ कपड़े बिखरे हुए हैं।

इधर पे एक बेड है बेड पे एक बिछा हुआ है उस पे एक तकिया है किधर कंबल रखा हुआ है इधर में बहुत सारे बैग वगैरह रखे हुए हैं ।

इधर में एलो कलर का लाइट जल रहा है इधर में घेरा हुआ पेड़ है उधर में बहोत बड़ा गेट बना हुआ--

इधर में घर टाइप का कुछ है उसमें बहुत बड़ा ग्रिल लगा हुआ है इधर में एक लाइट जल रहा है इधर में एक गेट --